ऊपर कंस्ट्रक्शन में बंबूस के फोल्डिंग का यूज़ हो रहा है।

एक लाल कलर का पोल दिखे रहा है।

दो लोग दूर एक हट के पास खड़े दिख रही है।

टेबल के ऊपर एक छोटी सी पौधा रखा गया है।

छोटी सी पथरीली जगह भी आसपास दिख रही है।

पर छोटी लाइट्स लगी हुई है।

मकान आधा तैयार है दीवार और छत बन चुकी है।

वह लोग नीचे एक बेरियल के पास कुछ हुआ दिख रहा है।

जगह ब्राइट लाइट्स लगी हुई है इंडियन ऑयल का दो साइन साफ तौर पर दिख रहा है एक मेन छत पर है और एक बिल्डिंग के ऊपर।

पेड़ पौधे और थोड़ा ग्रीनरी भी नजर आ रहा है जमीन ईंट से बना हुआ लग रहा है।

लॉन के बीच में एक पोल दिख रहा है।

इमेज में एक खुला मैदान दिख रहा है जिसमें व्हाइट बाउंड्री लाइन दिख रहा है।

सामने एक हरा भरा मैदान है फील्ड के बीच में कुछ लोग खड़े हैं।

ये एक बंद दुकान है जिसमें दोनो तरफ़ सेल्फस लगें हुए हैं सेल्फस में इलेक्ट्रॉनिक्स और होम आइटम्स रखे गये हैं।

पैनल्स ऑलरेडी तरीके से फ्रेम में लगी हुई है।

छत पक्की है और टाइल्स लगी है पीछे कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग दिख रहा है।

बीच में एक बड़ा टी_वी स्क्रीन मोटेज है वॉल पर।

पीछे एक छोटी सिक्योरिटी या गेट एरिया वाली बाउंड्री वॉल भी दिख रही है।

ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर में विंडोज और बालकनीज है।

लेफ्ट साइड में एक आयरन स्टेयर्केस भी दिख रहा है।

इमेज एक बड़ा इंडस्ट्रियल सीट का अंदर का है लोग सफेद हेलमेट पहने हुए काम कर रहा है।

इमेज में साफ और नदियां बह रही है नदी के किनारे सफेद पत्थर और रिटाइल जमीन है।

काउंटर के उम् ऊपर इनफॉरमेशन बोर्ड और नोटिस चिपका हुआ है।

लोगों के हाथ में कुछ डाक्यूमेंट्स भी नजर आ रही है।

इमेज में कई कच्ची या पार्शियली डेवलप्ड रोड दिख रही है।

पीछे एक गवर्नमेंट बस खड़ी दिख रही है उस पर पी डी टी लिखा है।